इस पिक्चर में कुछ लड़कियाँ डाँस की कर रही है जो कि कथकली डाँस लग रहा है साउथ इंडियँस का डाँस और ये लड़कियाँ डाँस के विभिन्न मुद्राओं में खड़ी हो रखी है।

यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर कुछ सजावट का सामान रखा हुआ है और एक पंखा भी है।